और इसके बगल में कुछ सेव के टोकरी हैं जिसमें बड़े बड़े फल रखे हुए हैं।

और यहां बगल में एक हरा सा अ पेड़ लटका हुआ है।

और यहां आगे से बिल्कुल अह खुल चुका है सब कुछ और यह मैकेनिक के पास आई है।

लाइटें लगाई गई हैं जो की दुर से ही चमक रही हैं।

अह यह एक बहुत बड़ा हॉल है।